ऊपर बादल है जिसका रंग सफेद और नीला है।

इसमें पानी नीचे की ओर बह बेहता हुआ आ रहा है बहुत ही तेज गति से--

और उसके नीचे एक स्टेज है स्टेज के नीचे ही सामने--

इसमें दोनों हाथों से फ़ोन पकड़ा है शीशे के सामने।

ब्लू है और उसके हाथ में एक घड़ी है दूसरे हाथ में कड़ा है उसके पीछे एक और लड़का खड़ा है।

रंग का परना ओढ़े आदमी का मुंह छुपा हुआ है उसके पीछे--

फोटो में पूरा नहीं आया है वो दूसरा आदमी दूसरी तरफ देख रहा है। सामने की ओर देख रहा है और यह पुराने तरह का कुछ इमारत लग रही है।

इसके इर्द गिर्द गोल गोल चक्कर से इसको सुंदर दर्शाया गया है बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य है।